हेलो दोस्तों तो आप कैसे हो यहां पे एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है और उसके पास में दुकान में लाइब्रेरी में कुछ --

बंदों के चप्पले पड़ी हुई है पास में गाड़ी खड़ी हुई है दोनों साइड से रोड है और यहां पे एक पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

ठंडा पानी पी सकते हो और वहां सीढ़ियां हैं सामने गैलरी हैं और उस तरफ एक हवा के लिए कूलर भी लगा हुआ है तो आप डॉक्टर से अच्छी खासी सुविधा ले सक--

काफी इनवायरमेंट के लिए अच्छी रहती है जिसे प्रदूषण नही होता है और साइड मे पवन पुत्र फर्नीचर भी है यहां से आप फर्नीचर के समान खरीद सकते हो।